सामने हम सफेद रंग की दो मशीनों को देख रहे हैं।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं सामने एक--

कुछ समान रखे हुए हैं साथ ही सामने एक लाल रंग की चेयर दिखाई दे रही--

पीछे हमें बड़ी बड़ी सीढियां नजर आ रही है।

हमें यहां पर कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग यहां सोफे पर बैठे नजर आ रहे है।

साथ ही हम सामने दिवाल पर बहोत ही सुंदर तस्वीर को देख रहे हैं पीछे कुछ चेयर दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ बड़े बैनर्स लगे हुए हैं।

वे टू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने जो स्कूटी रखी है इसका रंग लाल है।

एक ऐश्वर्य दिखाई दे रही है।

सामने ट्रेडमिलस् पर कुछ लोग दौड़ते नजर आ रहे हैं।

कुछ एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई हैं।

सामने दीवार पर ईंट के कलर का पेंट किया गया है।

सामने रेती और गिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है।

ट्रैक्टर की ट्रॉली पर एक महाराज जी बैठे हुए है पीछे फूलों से बहोत ही सुंदर सजावट किया गया है।

यहां हम सामने एक बड़े से ग्राउंड को देख रहे हैं।

बहोत से लोग पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं।